डैम में मछलियाँ पालन भी करते है और डैम के पानी से बहोत सारी कम्पनियां बिजली उत्पादन भी करती हैं।

यहाँ पे बहोत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे बहोत अच्छे-अच्छे शिक्षक होते है जो कि बच्चो को अच्छे से पढ़ाते है।

पानी को इकठा करके उसमे मछलियां पालन करते है और उस पानी से बिजली भी उत्पादन करते है ।

यह एक पहाड़ है और यह पहाड़ बहोत ही बड़ा है इस पहाड़ में--

यहां पे बहोत ताजी सब्जियां दी जाती है जिसके कारण लोग यहां पे --